यह एक गेराज है जिसमे एक गाड़ी खड़ी हुई है जोकि लाल कलर की है वहा पे लाल कलर के काफी सारे खम्भे हैं जमीन पर गाड़ी का बहोत सारा सामान बिखरा पड़ा हैं।

एक टायर है जो कि येलो कलर का और ब्लैक कलर का है जो कि जमीन पे रखा हुआ है। एक डेस्क है बैठने के लिए उसका कलर भी ब्लैक और येलो है।

यहाँ पर एक गाड़ी है ग्रे कलर की जिसका बोनट आगे से खुला हुआ है जिसमें आगे दो हेडलाइटे है एक नंबर प्लेट है जो सफ़ेद कलर की है।

यह एक गाड़ी है जो सफ़ेद कलर की है जिसका बोनेट खुला हुआ है जिसके अंदर ब्लैक कलर के काफी सारे उपकरण लगे हुए है।

ऊपर आसमान है नीले कलर का और सफ़ेद कलर का एक बिजली का खम्भा लगा हुवा है जहा से काफी सारे वायर गुजर रही हे।

यहाँ पर अ तीन सिलिंडर रखे हुए हैं जो की ऑक्सीजन की सिलिंडर हैं निचे टाइल्स है।

यह एक मैदान है जहां पे बोहोत सारी बसें खड़ी हुई है और बोहोत सारे लोग खड़े हुए है सभी लोगो ने अलग-अलग के कपड़े पहने है एक बांदा है --